यहां पे एक कुर्सी रखी हुई है जिस पे कोई नहीं बैठा है और यहां पे एक खिड़की दिखाई दे रही--

है जो कि गेट लगे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे लड़कियां हैं जो कि सभी मौन धारण किए हुए हैं।

और मुझे एक सफेद कलर की कार रखी दिखाई दे रही है उसके आस पास जोकि पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे टेबल है जो कि अच्छे से सजावट की गई है।

मुझे सामने एक एयरपोर्ट का गेट दिखाई दे रहा है जिसके आसपास बहुत सारे लोग है जो की वहां पे जा रहे है।

यहां पे गाड़ी है जो कि रखी हुई हैं और इसके आसपास कुछ पेड़ लगे हुए--

घूमने के लिए बहोत से अच्छी अच्छी जगह दिखाई दे रही है और यहां पे हरियाली भी थोड़ी दिखाई दे रही है पेड़ लगे हुए हैं।

मुझे यहां पे बहुत सारी साइकिलें रखी दिखाई दे रही हैं जो कि सभी प्रकार की और महंगी महंगी साइकिलें दिखाई दे रही हैं यहां पे लोग हैं।

दुकान के बाहर है जोकि अंधेरा हो चुका है दुकान के अंदर बहोत सारी लाइटें जल रही है।

बहोत अच्छी लगी हुई हैं और यहाँ पे एक ए_सी भीं दिखाई दे रहीं हैं और एक घड़ी लगी दिखाई दे रहीं हैं।

साइकलें भी दिखाई दे रही है बिल्डिंग के आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और एक--

अपने भगवान जी की मूर्ति दिखाई दे रही हैं और--

यहां पे कोई भी सामान गूगल पे पर --

और बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी दिखाई दे रही--

मुझे एक जगह पे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और वहां--

मुझे एक जिम दिखाई दे रही हैं जिसमें बहोत सारे डम्बल और एक्सरसाइज करने वा--

सभी प्रकार की मछलियां दिखाई दे रही हैं।

ये हरे हरे दिखाई दे रहे हैं और और--

पिक्चर दिखाई दे रही है इसका कलर है जो की--